जहां पर एक आने का और एक जाने का दो एक्सीलेटर भी लगे हुए है।

जो कि किसी घर में दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारा काले पीले का सामान भी दिखाई दे रहा है।

यह किसी गिफ्ट शॉप के अंदर की बहोत हि सुंद--

यहां पर ट्रेडमिलो का रंग ब्लैक कलर का भी दिखाई दे रहा है।

सुंदर भी दिखाई दे रहा है और बहुत ही बढ़िया भी दिखाई दे--